और दूर में एक कार है जो चल रहा है।

और साइड मे बतियां है जो लगी हुई है।

जो वाइट कलर की लगी हुई है ऊपर आसमान है जो पर डार्क कलर दिख रहा है।

और एक आदमी है जो अँधेरे मैं दिख रहा है और बाहर में --

पाइप है जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है और बालू है जिसका पहाड़ छोटा सा बना हुआ है और बहोत सारे एथे है जो साइड मै रखे गए है जो रेड कलर की दिखाई दे रही है।

इस इमेज मे मुझे पहाड़ है जो मुझे दिखाई दे रहे जो काले रंग के है दिख रहा है छोटे-छोटे पेड़ है जो ऊपर लगे हुए है।

और एंगेल है जो बॉक्स जैसा बना हुआ है जो काले रंग का दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे मुझे एक जीप है जो दिखाई दे रहा है जो थोड़ा टुटा-फूटा है और लगता है एक्सीडेंट हुआ है।

और एक दरवाजा है जो दिख रहा जो थोड़े ब्लू रंग के दिख रहे है एक बोरा है जो साइड मे फेका गया है।

जो ऊपर मे बहोत सारे लाइट जो ट्यूब लाइट जाली हुए है जो बहोत सारे पंखे है जो दिख रहे है जो चल रहे है।

अलमारी जैसे बने हुए है एक कंप्यूटर है जो आगे में दिख रहा है।

इस इमेज मे मुझे छोटा सा दुकान दिख रहा है जो पीछे बैनर लगा हुआ है जो कॉफी स्टाल लिखा हुआ है।

जो कुछ नीचे दिख रहा है और एक बास का टेबल है जो बनाया गया है उसके ऊपर कुछ गुलाबी कलर के बोतले है जो रखी गई है एक आदमी है जो चाय पी रहा है।